और टेंट लगा हुआ है बहुत सारे लोगा के देखने के लिए आए हुए हैं।

यहाँ पर ये ट्रेक्टर खड़ा हुआ है स्वराज ट्रेक्टर है और ये --

जहाँ पर नावे रखी हुई हैं और ये बहुत ही बड़ी एक नदी है।

बाउंड्री सी खींची हुई है | उस पार कोई जा ना पाए और ड्रेन के ऊपर खाली तार डले हुए --

और वो ड्रेसिंग रखी हुई है उस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और बहोत ही अच्छा महल दिख रहा है ये और अंदर जंगल है और बहोत सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

और इस ए.टी.एम. से ऐसा आता है की एकाउंट पर भी पैसे निकाले जा सकते हैं। ए.टी.एम. --

और ये बहोत ही अच्छे ग्राउंड डला है और पास में बहोत सारे ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ सूखा सी रेत डली हुई है और पास में बहुत सारे --